जहां बहुत सारी चीजें रखी हुई दिखाई दे रही है।

और कुछ व्यक्ति आते जाते दिखाई दे--

रेड कलर का बाइक दिखाई--